एक मंदिर नजर आ रहा है।

पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे--

जिसका रंग पिला और हरा है।

इस चित्र में हमें एक जगह दिखाई दे रही है काफी सारी गाड़ियां खड़ी हैं।

जिसमें बहुत सारे कमरे बने हैं।

कार के पास दो लड़के खड़े हैं।

इस चित्र में एक होटल दिखाई दे रही है ।

हरी और पीली तिरपाल रखी है।

इस चित्र में एक ढाबा दिख रहा है।

एक आ लड़का फोटो खींच रहा है।

एक आदमी ने नीली शर्ट पहनी है।

एक औरत दिखाई दे रही है।

कुछ गाड़ियां नजर आ रही हैं।

एक भगवान की मूर्ति है।

इस चित्र में एक बिल्डिंग दिख रही है।

कुछ पेड़ दिखाई दे रहे ।